बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है जो कि ग्रे कलर के है उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि हाथ फैलाया हुआ है और उसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

और उसके पीछे मुझे हरे कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान भी खुला खुला दिखाई दे रहा है।